सब ठीक-ठाक लग रहा रहा है और अच्छा खासा दिख भी रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पक्षी।

और खूबसूरत भी है। बहुत अच्छा लग रहा है और फेरी ले रहें हैं यहाँ पर जेंट्स लोग हैं लेडीज भी है।

खूबसूरत भी लग रहा है। देखने में बहुत प्यारा है। सब कुछ ठीक-ठाक है यहाँ पर। देखने में बहुत सूंदर है। जगह भी बहुत सुन्दर है।

और बहुत सूंदर भी दिख रहा है देके बनाया गया है जो की बहुत सुंदर है ये अच्छा खासा दिख भी रहा है।

अच्छा खासा सब कुछ दिख भी रहा है जो की बहुत प्यारा है बहुत सूंदर भी है अच्छा लग रहा है देखने में भी।

ये बहुत अच्छा है ऑफिस टाइप का लग रहा है। ये ऑफिस खूबसूरत है।

ये पूरा बहुत सूंदर है और खूबसूरत है। बहुत प्यारा लग रहा है और पूरा येल्लो-येल्लो है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है।

और ये पूरा लेकिन ठीक ठाक है। सब कुछ अच्छा है। और यहाँ बहुत नाइ भी है जो की नाइ यहाँ पर --